एक पंखा भी दिख रहा है।

बहुत सारे कुर्सी भी दिख रहा है एक पानी का बोतल भी दिख रहा है।

बोगरेज भी दिख रहा है जिसमें बहुत सारे किताब भी रखा हुआ है।

एक लाइट भी दिख रहा है और तार भी दिख रहा है।

फैन भी दिख रहा है।

लाइट भी लगाया हुआ दिख रहा है बहुत सारे लोहा भी दिख रहा है।

एक दरवाजा भी दिख रहा है।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

बोर्ड भी टांगा हुआ दिख रहा हैं और एक फ्रॉक भी दिख रहा हैं।

एक आदमी दिख रहा है जिसके हाथ में नाव चलाने का डंडा दिख रहा है।

वहां बहुत सारे पानी भी दिख रहा है।

और यहां पर लकड़ी एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे कपड़ा रखा हुआ है।

एक यहां तार दिख रहा है लाइट का।

और यहां पर एक गेट भी दिख रहा है ऊपर पोस्टर भी टांगा हुआ दिख रहा है।

यहां पर बहुत सारे कार भी लगाया हुआ दिख रहा है।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

कुर्सी भी लगाया हुआ दिख रहा है एक टेबुल भी लगाया हुआ दिख रहा है।

और यहां पर एक टावर भी दिखाई दे रहा है और उसके नीचे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।